यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक मेज दिखाइ दे रही है जो एक कॉण्सर्ट की है।

स्टेज पर कुछ लोग खड़े होकर गाना गाकर म्यूजिक प्ले करते हुए दिख रहे है यहीं पे सामने चेयर्स पर कुछ ऑडियन्स बैठे हुए हैं।

जो एक स्कूल की है यहाँ पर कुछ लड़कियां क्राफ्ट का सामान बना कर खड़ी हुई हैं और मैडम लोग जज कर रही हैं दीवाल पर फुग्गे भी लगे हुए हैं।

यह हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जो एक प्रिन्सपल रूम की है।

जो एक महोल्ले की है यहां पर काफी सारे घर दिख रहे है और एक मस्जिद भी आस-पास कुछ पेड़ भी है।

यहां हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है जिसमें एक घर दिख रहा है।

यह हमारे सामने फ्रेम पर एक इमेज दिखाई दे रही हैं।